पीछे एक रैक दिख रहा है।

बाहर थर्माकोल से बने हुए गाय नदी और ग्रास नजर आ रहा है।

पीछे एक गेट नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक लड़का पत्थर के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहा है।

पानी के आसपास मिट्टी पहाड़ दिख रहे हैं।

इस फोटो में छह बच्चे नजर आ रहे हैं।

रोड के उस पार एक बड़ा गेट दिख रहा है।

दीवाल पे फोटो सटा हुआ दिख रहा है।

एक लड़का मोबाइल चलाते हुए नजर आ रहा है।

और डिजाइन भी बनाए हुए दिख रहे हैं।

पोस्टर का कलर ब्राउन है।

इस फोटो में एक आदमी नजर आ रहा है आदमी के पीछे एक मिरर दिख रहा है।

उपर एक झंडा और लाइट लगा हुआ दिख रहा है।

और उसके पीछे एक लड़का फोटो लेते हुए दिख रहा है।

लड़के के हाथ में एक मोबाइल नजर आ रहा है।

इस फोटो में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई दिख रही है।

बगल में एक पेड़ नजर आ रहा है और एक छोटा सा पार्क भी दिख रहा है ऊपर बहुत सारी लाइट लगे हुए दिख रहे--

इस फोटो में एक कार दिख रहा है कार का कलर व्हाइट है।

दीवार पे एच पी का साइन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिखा हुआ दिख रहा हैं एक बड़ा गेट भी नजर आ रहा हैं।

छोटे छोटे और बहुत सारे कट दिख रहे हैं।

हाउस लिखा हुआ है और उसके बगल में एक आदमी दिख रहा है।

और नीचे ग्रीन कलर का मैट लगा हुआ दिख रहा है।

टेबल लगे हुए दिख रहे हैं।